बहुत से आदमी नहाने भी आते हैं यहाँ पर जल भरने भी आते हैं यह पानी के ऊपर बहुत ही बड़ी पुल बनाई गयी हुई है यह पुल पर सभी आदमी चलते हुए दिखाई दे रहे हैं ।

बहुत सारे जंगली उँ जानवर भी पीते है यहाँ पर बहुत सारे --

यह जिम करने से बॉडी बनते है हेल्थ बनते है।

यह पहाड़ के नीचे पत्थल है यह पत्थल प यह लड़का यहाँ पर खड़ा है यह लड़का चश्मा पहना हुआ है।

इस यह घर के बाहर ग्राउंड है इस ग्राउंड में एक गाय बांधी हुई है यहाँ पर एक टोटो भी है।

यह देखो अंदर यह दवाई यहाँ पर अनके प्रकार के दवाई सभी आदमी यहाँ से ले जाते हैं ।